एक आदमी झाड़ू लगाता हुआ एक पार्क में दिख--

डिकिया नीचे लगी हुई हैं।

और ये एक स्टील की दुकान है जो बहोत ही बड़ी--

और अंदर से हैप्पी बडे भी लिखा गया है।

टेंट लगाया गया है और इसे सजाया गया--

कोई फंक्शन के लिए सजाया गया--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि यहां पे एक गाड़ी खड़ी है और--

एक लाल रंग का कोई मंदिर जैसा चीज दिख रही है जिसके एक गेट लगा हुआ है।

भी लगाया गया है जिसकी जिससे हमें धूप--

और यहां कई लोग भी बैठे हुए है कुर्सियां भी लगी हुई है।

पिंक और वाइट कलर की कांबिनेशन की त्रिपालें लगी हुई--

शीशे वगैरह बहुत सारे लगे हुए हैं।

ये तस्वीर है जिसमे बाटा ऊपर लिखा हुआ है।

एक छोटी बहुत ही ज्यादा छोटी है।

इस तस्वीर में हम एक आदमी को देख रहे हैं।

तस्वीर है जिसे में हमें एक बोट को देख रहे हैं जिसके अंदर आदमी और औरतें भी बैठी हुई है।

सूरज भी यहां पे ढलने वाला है।

इस तस्वीर में हम एक जिम को देख--

जिम की मशीनें पड़ी हैं कुर्सीयां--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हमें ये कोई मंदिर या कुछ और चीज लग रही है।

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि ये एक क्रीम कलर का घर है।

व्हाइट प्लेटें लगाई हुई हैं और ब्लैक प्लेटो लगाई हुई हैं।

द्वार के ऊपर कुछ आईडिया लिखा हुआ है।

और यहां डांस प्रैक्टिस कर रही--

इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हमें श्री साइन ऑटो गैस रिपेयर की एक दुकान--

एक तरफ से पूरे और एक तरफ से पूरी की पूरी दिखा --

तस्वीर में हम देख सकते हैं कि हमें व्हाइट बिल्डिंग --

और बालकनी हम अच्छे से बालकनियों को भी देख सक--

एक आदमी एक येलो कलर की पाइप जहां से पानी आता है उससे वॉश भी कर रहा--